जुताई करने के लिए माल आहन-वाहन करने के लिए बहुत अच्छा --

एक बहुत ही अच्छा जिसके ऊपर पूरा स्टैचू है एक दुर्गा माँ का एक शेर का।

पढ़ने के लिए एंटरटेनमेंट के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए यहां पर कैरम बोर्ड है।